और ब्राउन कलर की टेबल के ऊपर एक ब्राउन कपड़ा भी सीट बिछा है।

कमरे में लाइट भी जल रही है और कुछ लोग खरीदी भी कर रहे हैं।

बास्केट भी रखे हुए हैं टेबल चेयर्स भी रखा है अलमारी के ऊपर--

और इन लोग एक समान एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और मंदिर की ऊपर कुछ नीला आसमान भी दिख रहा है।

नीचे मैदान जैसा है और बहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई है।

और इधर खुला आसमान नीला दिख रहा है आजू बाजू--

और सामने दीवाल में कुछ शो का सामान भी रखा हुआ है।

यहां एक ऐसी सीनरी दिख रही है जहां--

उसके अन्दर बोहोत सारे सामान भी रखे हुए है।

यहां एक बड़ी सी बस नजर आ रही है उसमें एक लड़का--

बगल से तीन चार पेड़ भी दिख रहे हैं।

तलाव के सामने एक बहोत बड़ा--

झाड़ है उसके सामने एक जाली सी लगी हुई है और पिलर पिलर है।

कुछ एक्सरसाइज कर रहा है और दूर दूर में झाड़ पेड़ पहाड़ नजर आ रहे हैं।

इस साइड भी कुछ लिखा हुआ है दीवाल पे।

येलो टेबल और ब्लू कुर्सियां रखी हैं।

और एक छोटा रूम भी दिख रहा है पीछे की ओर खुला आसमान दिख रहा है।

बहोत बड़ा रोड भी दिख रहा है और स्कूल की बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां भी है।

ये एक मछली बजार है यहां कई प्रकार की मछलियां बिक रही हैं।